यहां पर मुझे एक बड़ा सा मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

और कुछ कुर्सियां दिख रही हैं जिसमें वाइट कलर और हल्का ग्रीन कलर का प्रिंट है।

इसमें कुछ प्याज रखे हैं और कुछ में आलू रखे हैं।

यहां पर एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है जिसमें रेल का पटरी दिखाई दे रहा है जो हल्का मिट्टी कलर का है और ब्लैक कलर का है।

और बहुत सारे बड़े-बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे कांच लगे हुए हैं और एक सुंदर सा आसमान दिखाई दे रहा है।

और कुछ आदमी लोग है और लड़कियां है जो बच्चे लोग को खाना बांट रही है।

और कुछ नीचे में गमले दिख रहे हैं जो मिट्टी कलर के हैं और हल्के ब्लैक कलर के हैं जिसमें बहुत सारे फूल के पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं और घास दिख रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

और कुछ पर्दे दिख रहे हैं जो क्रीम कलर के हैं और एक अलमारी दिख रहा है जो ब्लू कलर का है।

यहां पर मुझे बहुत सारे वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं।

और एक बहुत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

और कुछ पंखे लगे हुए हैं जो वाइट कलर के हैं और एक केमरा दिख रहा है जो ब्लैक कलर का है।